यहां पर आप देख रहे हैं बहोत सारी स्कूटी और बाइके दिखाई दे रही हैं जो एक क्या बोलते है लग रहा है ऑफिस के बाहर खड़ी हुई हैं और कुछ व्यक्ति भी खड़े हुए हैं।

सामान रखा हुआ है जिसमें वो सारे तके रखे हुए हैं कुछ वाइट कलर के हैं कुछ अलग-अलग कलर के हैं कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं।

यहां पर आप देख रहे है ये बाजार का सीन है जहां पर एक ठेले पर बहुत सारे आम रखे हुए है जो हरे कलर के हैं पीले कलर के भी है।

इतनी तादाद में एसी लगे हुए हैं और अंदर देख रहे हैं अंदर से आप पैसे निकाल भी सकते हैं और डाल भी--

यहां पर आप देख रहे हैं ये एक चर्च है चर्च में बहुत सारे लोग आए हुए हैं और बहुत सारी डेकोरेशन भी हुई है और यहां पर आप देख रहे हैं।

लड़कियों से है और लेडीजों से भी रिलेटेड है कुछ सूट दिखाई दे रहे हैं कुछ व्हाइट कलर के हैं कुछ हरे कलर के हैं।

यहां पर आप देख रहे हैं ये रेस्टोरेंट है रेस्टोरेंट में देख रहे हैं आप बहुत सारी चेयर और टेबल पड़ी हुई है और यहां पर पंखे भी लगे हुए हैं ए_सी भी लगे हुए है।

कुछ औरतें भी हैं और कुछ जेंट्स भी है जो काफी आनंद ले रहे हैं काफी मजा ले रहे हैं।

और कुछों के कपड़े बैग और बोतले बोतले यहीं पे ही रखी हुई है और इसमें लाइटें भी लगी हुई है काफी--

और ये वाइट अं कलर की शर्ट पहनी हुई है और ब्लैक कलर की ट्राउजर पहना हुआ है।

कुछ स्कूटी भी खड़ी हुई है और ये वाइट कलर में लिखा हुआ है और इस पर एक गुलदस्ता सा छुपा हुआ है जिस पर आप--

लेवल स्पीड फोकस लाइटिंग रेजीमेंट फास्ट मेन्टेन पावर ऑफ --

बहुत सारी चीजें आपको फोटो को फिट करने के लिए आप यहां पर बहुत--

वैसे समझ में नहीं आ रहा है कुछ गुड्डी गुड़िया भी रखे हुए हैं कुछ फ्लावर्स भी रखे हुए हैं।

आते उसमें दीवारों पर टैले लगी हुई है और ये काफी अच्छा लग रहा है।

और टीचर ने भी माक्स लगाया हुआ है और ओ भी बड़ा मस्त लग रहा--